और हरे-भरे यहाँ पर शाखाएं भी दिखाई दे रही है।

बहुत सरे रिबन्स भी लगे दिख रहे हैं और लाइट भी दिखाई दे रही है और रेड कलर का दिखाई दे रहा है रेस्ट्रॉन्ट ।

और यहाँ पर ऐ_सी भी लगा हुआ है और एग्जॉस्टिक फैन भी लगा हुआ है| यहाँ पर बहुत सारी लाइटिंग भी लगी हुई--